खाली पड़ हुए है। सारे हील चेयर दिखाई दे रही है। विंडो दिखाई दे रही है। एक चादर दिखाई दे रही है। लाइट दिखाई दे रही है।

ये दिखाई दे रहा है।

नाइस इस पे हैपी दिवाली लिखा है। एक रुमाल दिखाई दे रहा है। एक बेग दिखाई दे रहा है।

मुझे एक वोटर पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी स्लाइड्स है अलग अलग कलर की|

बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत सारे ग्रीन कलर के तार दिखाई दे रहे है ऑन्टीयाँ दिखाई दे रही है|

इंस्टिट्यूट दिखाई दे रहा है कार दिखाई दे रही है घास दिखाई दे रही है।

यहा मुजे ऐक्सिस बैंक दिख रहा है इसके सामने तीन आदमी चार आदमी खड़े हुए है।

तीन चार लोग दिखाई दे रहैं हैं एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का पेड़ दिखाई दे रहा हैं एक ग्रीन कलर का पीछे घर दिखाई दे रहा हैं। ब्लू कलर का--

मुझे एक डैम दिखाई दे रहा है। जिसके अंदर एक नाव है।

मुझे बोट दिखाई दे रही है दो एक बोट में तीन लोग है एक बोट में दो लोग है बोहत ज़यादा पानी दिखाई दे रहा है बोहत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है दूर दूर तक ।